बहुत-बहुत भव्य गेट छै अंदर पार्किंग छै बाहर मोटर साइकिल लागल छै आदमी खड़ा छै और कतारबद्ध से अंदर घुस रहल छै।

गेट के बगल पोल छै जे पोल में वेपर लागल छै।

ई एगो बोहोत सुंदर गेट छे गेट के आगे मे दु टा गाछ छे गाछ के म अ के बाद बगल मे पार्किंग छे दोनों साइड |

इ एगो फील्ड छै फील्ड के अम्म फील्ड पर कुछ ईंटा रखल छै बांस रखल छै रोड छै रोड पर ट्रको छै।

इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी सहरसा एक कॉल-कॉलेज टाइप के --

इ बहुत बढ़िया जिम के संस्थान छिये एमे अनेक-अनेक तरह के मशीन राखल छै।

मोटरसाइकिल छे कार लागल छे ओए हो मो म हॉस्पिटल में खिड़की अच्छा --